बड़ा सा पोस्टर लगाया हुआ गया है जो सफेद रंग का है।

खिड़की बनये गए है और दरवाजे बने गए है जो भूरे रंग के और काले रंग के दरवाजे है बालकनी बनाई गयीं है।

सफेद-नीला असमान है खिड़की बनाई गई है कांच लगी हुई है एक पाइप लगा हुआ जो सफेद रंग की है।

एक ने छत्ता लेकर बैठे हुए है जो काले रंग की छति है ऊपर आसमान है जो सफेद और नील रंग की असमाने है।

सामने के साइड पी-पिट्रोल पंप है जो तीन पिट्रोल पंप है सफदे रंग की पिट्रोल पंप है ऊपर के साइड पे दीपाल है जो सफेद रंग की है।

साइड पे काफी इ बड़ा तालाब है जो काफी पानी भरी हुई है सामने एक मूर्ति बनी हुई है।

सामने एक बरौंदा है जो भूरे रंग की अगल-बगल दीवारे हैं सफ़ेद रंग की हैं एक आरो लगा हुआ है जो नीले रंग की है सामने कुछ --

सामने एक साइड पे घर बना हुआ है जो सफ़ेद रंग की है अगल बगल दीवारे पेड़ पौधे जो हरे रंग की पतिया सफ़ेद नीला आसमान है।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो सफ़ेद रंग का शल्ट पहना हुआ है नीले रंग का बैग रखा हुआ है।